पीले रंग के भी है हैं पौधो बहुत सारे है ।

और काले रंग का है ग्राउंड पर लाई हल्के भूरे रंग की धूल है ।

उन उन पर कुछ और काम हो रहा है ।

यह एक कमरा है। कमरे पर एक दीवाल है जिसका रंग ग्रे कलर का है।

मूर्ति के सामने नीचे कुछ जमीन पर रखा हुआ है ।

यहां एक कमरा है लेकिन यह कमरा थोड़ा कच्चा है।

सभी तालियाँ बजा रहें हैं और झंडे को देख रहें हैं।

जो हाॅट है वो लोग कुर्सी पर बैठे है।

कुर्सियों का रंग काला है। पीछे परदे हैं जिनका रंग नीला--

यहां एक टेबल रखी है। टेबल पर एक थाली है।

अ उसी थाली में एक चम्मच और एक काटा भी है।

और-र यह थाली काले रंग की है।

एक ने लाल टी-शर्ट पहेन रखा है।